बजरंग इस तरह का नाम दिखाई दे रहा है।

इससे तस्वीर में मुझे एक सामने तस्वीर दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे पार्क दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक झुला भी लगा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक महिला एक पुरुष दिखाई दे रहे है जो मोटरसाइकिल से कही जा रहे --

सामने मुझे ओरोप्लेन दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ कुर्सी और कुछ टेबलें दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक बुक की दुकान दिखाई दे रही है जिसके अंदर कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे कुछ मिक्सी ग्राइंडर दिखाई दे रहे हैं जो डब्बों के अंदर है कुछ नाम भी दिखाई दे रहे हैं बजाज --